एक दो चैनल गेट लगे दिखाई दे रहे हैं एक चैनल गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ कुछ टिशू पेपर को काटते हुए एक लड़की बहुत बड़े टिश्यू पेपर को काटते हुए--

एक कोट हैं और यह डाई ही लगाई हुई हैं यह ब्लू कलर की चश्मा लगाए हुए दिखाई दे रहा हैं यहाँ केक का बक्सा बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ दिखाई दे--

इस इमेज मे यहाँ बहुत बड़ी शॉप दिखाई दे रही है और रैक है जमी हुई देखाई दे रही है यहाँ इनमे रैको में सामान रखा हुआ।

इस इमेज में यहाँ डेस्क रखे हुए पर्दा दिखाई दे रहे हैं घड़ी लगी दिखाई दे रही हैं बहुत सारे बल्ब लगे दिखाई दे रहे है।

यहाँ इस बस मे ए -एक बूढ़ा आदमी जाते हुए दिखाई दे रहा है ओ बैग कंधे से टंगा हुआ दिखाई दे रहा हाथ में झोला रखे हुए देखाई दे रहा ए--

इमेज में यहाँ पर इस्ट लोगो और कुछ बच्चे बैठे हुए इनाम प्राप्त करते हुए आदमी रखे हुए दिखाई फोटो निकलवाते हुए दिखाई दे रहे है।

पेड़ रखे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ सजी वजी लड़कियां दिखाई--